और उसके पीछे पेड़ दिखाई दे रहे हैं पेड़ हरे हैं।

ऊपर मंदिर का रंग सफेद है और कुछ झंडे लगे हुए जिनका रंग लाल है।

बिल्डिंग के आगे एक चंटा है उसका रंग येलो है।

कमरे में एक आदमी बैठा हुआ है लैपटॉप पे काम कर रहा है।

उसके साइड में एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है।

छत पे ग्रीन और येलो कलर की लाइट जस रही है।

तीन टैंक है कोड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है ऊपर ये--

बैनर पे कुछ लिखा हुआ है और नंबर लिखा हुआ है।